उपर को करे हुए हैं और यहां पे हरी घास भी लगी हुई है।

ये फलों की दुकान है यहां पर बहुत प्रकार के फल मिलते हैं और अनार भी संतरा भी रखे हुए हैं और सेब भी रखे हुए हैं। और --

और यहां पे लड़का साइकिल पे बैठा हुआ है और मास्क भी लगाए हुए है और यहां पे लाइट है--